ग्राउंड में हल्की हल्की घास भी उगी हुई है।

पीछे स्कूल कि बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर कुछ सरिए भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी ग्राउंड का दिखाई दे रहा है।

इसमें हल्की घास भी उगी हुई है।

ए_सी भी लगे हुए और उस पर सफ़ेद अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है।

सफेद रंग के नीले रंग के बैंगनी रंग के और इसमें एक डस्टबिन भी दिखाई दे रही है।

और इसमें एक पंखा भी दिख रहा है और इसमें घोडो की एक पेंटिंग भी दिख रही है।

उन पहाड़ों पर कुछ धुंध भी पड़ी हुई है।

एक बॉक्स में गिटार रखा हुआ है और एक बैग रखा हुआ है।

और इसमें एक साइड दो ढोलक रखी हुई है।

और इसमें एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है काले रंग की--

इसमें एक मोटरसाइकिल का पहिया भी दिख रहा है।

उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए है।

और इसमें लोहे के डब्बे बने हुए हैं।

और कुछ गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं काले रंग के।

उस मंदिर के ऊपर कुछ रखा हुआ है।

में बहुत सारी भगवान जी की तस्वीर भी रखी हुई है।

और इसमें एक पन्नी भी लगी हुई है।

और इसमें टेबल भी दिखाई दे रही है।

इसमें काउंटर पर कुछ पानी की बोतल भी रखी हुई है और इसमें पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।

फोटो में एक लड़की डांस कर रही है।

और उसके चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

उसके पीछे कुछ कुर्सियां रखी हुई है जिन पर सफेद रंग का कवर चढ़ा हुआ है।

जिसने सर पर टोपी ओढ़ रखी है।

यह फोटो एक कार गैरेज का लगता है।

और उसपर भी सामान रखा हुआ है और उस पर टिन डली हुई है और नीचे फर्श भी हो रहा है।

यह फोटो किसी शादी का लग रहा है।